एक बहुत बड़ा सा रोड दिखाया जा रहा है रोड में --

कूल बस खरे हैं कुछ कचड़े फेंके हुए छोटे छोटे घास है।

पेड़ वेड़ दिखाए जा रहे हैं एक कार का --

मिट्टी का रास्ता टाइप का बनाया गया है बहुत ऊंचा ऊंचा--

विंडोज एक एक हाफ हाफ खुला हुआ है कोई पूरा खुला हुआ है।

बांस वास लगाए गए है सीलिंग फैन है विन--

एक बगुला को दिखाया गया है जो ब्लैक कलर का है वह एक पैर ऊपर --

सोफा दिखाए जा रहे है बहोत सारा जो सोफा रखा हुआ है लाइन से कुछ तीन को एक साथ बैठने वाले--

जो काफी बड़ा अह छोटा सा है और वो खु काफी खूबसूरती से उसे सजा कर के रखा गया बहुत सारे लैंप --

ऊपर में भी लटका लटका के रखे गए हैं कुछ झूमर है झूमर में भी लाइट है ऐसे भी लाइट्स बनाए गए कुछ गुड के डब्बे उब्बे भी रखे गए --

कवर करके रखा गया है साइड में एक पंडाल टाइप के बनाए गए बूफर उफर साइड में--

बनाए गए हैं कुछ फूड ऊल से सजाए गए हैं पर्दे वर्दे कपड़ों उपड़ों तार वार पोल वोल --

एक सब्जी का दुकान दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं खीरा है भिंडी है।

गाजर है मशरूम है कुछ बर्तन वर्तन भी रखे हुए हैं वजन करने के सामान है एक आदमी है टमाटरस से कुछ टोकरी में भी र --

और साइड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बड़े बड़े रखे हुए हैं कुछ छोटे छोटे घास वास रखे हुए हैं ।

जो की येलो में ब्लैक में क्रीम कलर पे पिंक में बेबी पिंक में--